बिजली की लड़ियां भी लगी हुई है।

खाना ले रहे है उसके सामने मुझे एक और--

घर दिखाई दे रहा है जो की एक मंजिला--

चार मंजिला दुकान नजर आ रहा है।

जोकि दो मंजिला मकान है और इसके सामने एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे एक--

और एक तालाब भी दिखाई दे रहा--

एक खुदाई करने वाला बहोत बड़ा उपकरण दिखाई--

इस दृश्य में मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है।

और उसमें योगा करने के उपकरण--

इस दृश्य में मुझे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई--

और उसके पीछे जूते भी--

दृश्य में मुझे रेल की पटरियां दिखाई--